कोई एक भी बगल में कीड़े सब देख रहे है और भाई सब बुझा रहे है खड़े और एक बाइक लगे हुए है।